अ दिखाई दे रहे हैं बहुत लोगों के भीड़ है लगता है कि मेला--

अह ख़म्मा के ऊपर जो है ये बिल्डिंग टाइप का उसके पीछे एक पेड़--

कोट पैंट शर्ट पहेने हुए देखाई दे रहे हैं।

जिसमें पानी न नदी तरह का पानी नजर आ रहा है उसके आगे बूढ़े पेड़ पौधे घने नजर आ रहे हैं हैं न--

ठीक उसके बगल में पर्दा जो है दिखाई दे रहा।